और यहाँ पर बहुत ही कच्चा इलाका टाइप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सूरज ढल रहा हैं |

ये यहाँ कच्चा इलाका है और इधर हमे एक ट्रैक्टर्स अ दिखाई दे रहा है।

हम इस इमेज को देखकर ये सोच सकते है की यहाँ एक हॉल है और इस हॉल के अंदर--

रेड और येल्लो कलर की बॉल है।

दूल्हा-दुल्हन के आस-पास में--

जैसा कि हम यहाँ देख सकते है कि ये एक रायगढ़ का स्टेशन है और इस स्टेशन पर हमें बहुत सारी भीड़ दिख रही हैं ।

कि यहाँ पर एक बारात निकल रही है और इधर इसमें बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ।

--जो की ये श्री अ-अविन-अरविंद नाक --

गवर्नमेंट व्हीकलस और ये इसके अंदर हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बाहर की ओर भी हमें बहुत सारे--